सामने पर्दे लगे हैं और इसमें कुछ पंखे लगे हैं।

अं फल के पास एक तराजू रखा है एक ईंट है।

यह एक कपड़ो की शॉप है।

इसमें बहुत सुंदर कपड़े हैं।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है इसमें कुछ आदमी दिख रहे हैं।

यह एक नई केरला होटल है।

एक बहुत बड़ी मेज है इस मेज पर किताब है ऊपर गुब्बारे लगे--

और यहां पर एक मेंट लगा है।

यह एक ऑफिस है इसमें एक घड़ी लगी है।

कुछ मास्टर है और कुछ मैडम है।

यह एक बहुत सुंदर सोफ है।

और यहां पर कुछ मेज हैं कुछ कुर्सियां है।

यह सजावट बहुत सुंदर है जो की अलग_अलग फूलों से की गई है।

और फूलो से कुछ लैंप बनाये गये है।

और एक बोर्ड लगा है जो कि बहुत सुंदर है।

यह एक बहुत सुंदर है जंगल है इसमें एक नदी निकल रही है।

यहां पर बहुत सारे आदमी है।

यहां पर कुछ पंखे हैं और फिल्टर मशीन है।

इस दुकान में एक रोशनदान है।

इसमें से एक झरना निकल रहा है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में बहुत सारी कुर्सियां है।

एक रिक्शा है यह रिक्शा बहुत सुंदर है।

जो कि योगा कर रही है दीवार पर एक घड़ी लगी है।